छत ढलता हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर एक इधर ढलाई होती हुई दिखाई दे रही है।

खुला हुआ फ्लावर्स लगे हुए दिखाई देंगे लेकिन गेटों ऑफ़ फ्लावर्स लगायेगे।

हरे भरे पेड़ पौधे लगे रखे कही पे सूखे रखे एक गार्डन दिखाई दे रहा--

कांच के गेट का कांच लगे हुए दिखत है कांच के शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ओ_एन_एल_वाई_एल_ओ_वी_ई लिखा हुआ दिखाई दे रहा--

खाली मैदान बना हुआ कई सारे बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें कई सारे बस के अंदर कई सारे इंसान दिखाई दे कई सारे कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं।

एक तरफ दीवाले ग्रीन कलर पुती हुई दिखाई दे रही है एक तरफ व्हाईट कलर से पुती हुई सामने की तरफ खिड़कियां ऊनी-ऊनी दिखाई दे रही है कांच की कांच की खिड़कियां लगी --

जैसा कि कुर्सियां रखी हुई हैं सामने की ओर बेंच के ऊपर कई लैपटॉप रखे हुए--

व्हाइट कलर की टाइल्स है फोटो लगी हुई दिखाई दे रही ब्लू कलर वाइट कलर से पोता--

लोक सेवा केंद्र लिखा हुआ दिखाई देने से वो कैसा दुकान खुली दिखाई दे रही--

कुर्सियां बेंच रखे दिखाई दे रही है सामने की ओर--

सुमसान रोड दिखाई दे रहा है। दो दुकाने ओर खुले दिखाई दे रहे है ठंडी के वजह से कांच के गेट लगाए गए है। कैसे ये पंखे-वंखे बैंच है छत दिखाई दे रही है सामने की ओर--

पेज वेज की सारी पॉलिथीन पन्नीया कैसे निरमा कैसे चीजे रखी हुई दिखाई दे रही है।

फूल सी लगी टाइल्स है ब्लैक कलर कि टाइल्स लगी हुई है जैसे इंसान सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर जैसे --

वो दीवाल में गमले टंगे हुए दिखाई दे रहे आजू बाजू दिवालों में वाइट कलर दिखाई दे रहीं--